बहोत सारा डी.जे. है बहोत ही सारा डी.जे. है और डी.जे. बहोत सारा चीज में काम आता है।

पिंक है और ब्लू है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है।

रास्ता है और रास्ता के पास बहुत ही अच्छा घर और पेड़ है जो की बहुत अच्छा है।

बहुत सारा काम आता है इस चीज का और ऊपर में आसमान भी बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू कलर का जो कि बहुत ही अच्छा है।

बहुत बडा नदी है और नदी के ऊपर पुल है जो कि बहुत अच्छा लग रह है। नदी में बहुत ही साफ पानी है। बहुत अच्छा लग रह है। उ --

शादी का फन या फंक्शन कोई चीज़ का फंक्शन है बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा --

इसमें बहुत सारा फूल का गाछ है जो कि बहुत सारा फूल हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

और मंदिर में चढ़ाया जाता है भगवान को जो कि बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल का माला है।

खाना चाहिए सेहत के लिए अच्छा होता है और अंगूर तो वैसे भी बहोत ही पसंद है।

जो कि बहुत अच्छा लगता है। उसके आस-पास बहुत सारा घर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है।